यहां पे जो और एक फिश मार्केट है और यहाँ फिश मार्केट में बहुत सारे प्रजाति के फीस रखे गए हैं। एक आंटी आ के उसको उनको चूस करके ले रही है और यहां से जो है एक अंकल भी जा रहे हैं जो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है।

ये जो मुझे शायद अंगूर जैसा लग रहा है ब्लैक अंगूर जो दिख रहा है बहुत ज्यादा स्वीट है और इसे खाने में भी ज्यादा से ज्यादा टेस्टी लगता है।

ये पीछे में बहुत सारे जंगल हैं जहां पे कोई जैसे छोटा सा फूल को लेके पिक लिए जो दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट है।

यहां पे शायद सब कोई पौधे लगा रहे है प्लांटेशन करना अच्छी बात है ये सारी हॉस्टल की गर्ल लग रही है मुझे।

और यहाँ पे जो एक छोटी सी बच्ची एक इन्होंने गिफ्ट दे रही है तो उनके स्कूल के सारे स्टूडेंट टीचर सब है जो गिफ्ट दे रही है।

तो ठीक है सारे --

ये मुझे नहीं पता की यहाँ पे जो भी है बोहोत बोहोत बोहोत सुंदर है। इसके पीछे का जो वो ये भी है ये भी बोहोत सुंदर है ये शायद मुझे लगता है न सिल्वर का है।

और यहाँ पे जो है ऊपर से यहाँ पे जो इतने सारे बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मुझे तो ऐसे भी बहुत पसंद है और ठंड के मौसम में तो कोई जाना नहीं चाहेगा पर फिर गर्मी --

यह के लिए बहोत ज्यादा सुंदर है और मैं भी यहाँ पे एक बार जरूर जाना चाहूंगी और यह ऐसे भी बहोत ज्यादा सुंदर भी लग रहा है ।

और आज कल बॉय और गर्ल में ज्यादा ये नहीं कलना चाहिए सब होता है।

और एक अंकल जो हैं माइक पे सबको बोले ओ इधर सीट से चल और यहां पर एक बच्ची जो है साइकिल चलाते हुए जा रही हैएक पीछे में एक स्कूटी चलाते हुए जा --

ये मछली बेचकर आईफोन थर्टीन प्रो ले ली बताओ गाइज और एक आंटी मछली बे --